हॉल में बहोत बड़ा काठ का एक पिलंग बिछाया गया है।

ये तस्वीर एक डेयरी की है।

इसमें एक नीला बोर्ड लगा है।

यहां पर पानी का तालाब भी है।

ये तस्वीर एक स्कूल की है।

यहां लाल रंग का कालीन बिछाया गया है जिस पर बच्चे लेटे हुए है।

इस पर योगा के बारे में कु--

पारक बहुत बड़ा हैं इसमें बहुत सारे गमले रखे हुये हैं।

यहां बागवानी कर रहे हैं।

कार की रिपेयरिंग हो रही है।

दुकान में बहुत सारी तस्वीरें और पेंटिंग रखी हुई हैं।

कॉस्मेटिक सामान रखे हुए है।

बहुत बड़ी हरी भरी जगह की है।

यहां सामने एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

खेत है और हरी फसल दिखाई दे रही है।

पीला और भूरा है इसमें ए_सी भी लगे हुए हैं।

ये तस्वीर एक बहुत बड़ी जगह की है।